दिन का टाइम हैइधर पेड़ है इधर रोड है।

लड़का लड़की के लिखा हुआ है आधा और शू बाजार नीचे शू बाजार है ऊपर कपड़ा वपडा है।

यहां पे लकड़ी का भी कुछ बनाया हुआ है।

कुर्सी पे बैठे हैं दोनों कौन हैं।

यहां बहुत सारे बॉक्स हैं।

कोई जगह है। जहाँ पूरा व्हाइट कलर का डिजाइन दे के शायद मंदिर है।

बड़े और बहुत सारे बड़ा सा हॉल --

ब्रिज पे नीचे ही है और दिन का टाइम है।

पोस्टर उसटर लगा हुआ हैं और ऊपर बोर्ड हैं बड़ा सा इसमें लिखा हुआ हैं सैमसंग महालक्ष्मी टेलीकॉम और यहां दीन का टाइम हैं।

ये देव घर मंदिर है और यहां बहुत सारे मंदिर है।

नीचे कम से कम पन्द्रह बीस मकई है।

पूरा नहीं छिला हुआ है मकई के साइड साइड में पूरा ए हैग्रीन कलर का ये किया हुआ है।

राइट में एक आदमी खड़ा है जो कि दिख नहीं रहा है पूरे अच्छी तरह से और यहां उधर भी एक घर है।

बरगद का पेड़ है इसको दीवार से घेरा हुआ हैं।

बगल में बाइक वाइक रखा हुआ है और यात्री निवास का जगह है। यहां पे यात्री निवास करते हैं। और यहां और भी बाइक है। बाहर आदमी लोग हैं।